यहां बहोत सारे चीज़ां दिखाई दे रहे है।

यहां छोटे-छोटे चॉकलेट्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां हरे भरे घास है और यहां बड़े छोटे पत्थर है।

यहां बडी बिल्डिंग है और आसमान भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बड़ा सा डोर है।

और यहां छोटा सा कंपाउंड है।

बहुत सारा फूल दिखाई दे रहा है।

बहुत बडी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

यह एक आइसक्रीम शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारे मेनू बोर्ड्स लगाए हैं यहां पे बोर्ड पे ट्विस्ट द स्कूप लिखा हुआ है।

यहां ए_सी दिखाई दे रहा है यहां पर करेंट का स्विच बोर्ड है छोटा फैन है लाइट और यहां पर मनी प्लांट का।

यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहां छोटे थोडे सीढ़ियां भी है।

ये एक आइसक्रीम की शॉप दिखाई दे रही है यहां पे ट्विस्ट द स्कोप लिखा है।

यहां एक बुलडोजर की मशीन दिखाई दे रही है बहुत सारे बड़े-बड़े--